वह आदमी शर्ट और पैंट पहना हुआ--

चित्र में मुझे कटनी जंक्शन स्टेशन दिख रहा है।

चित्र में मुझे एक कार दिखाई दे रही है।

चित्र में मुझे कुर्सियाँ रखी हुई दिख रही है।

दिख रही है चित्र में मुझे एक टेबल दिवा--

जे पानी भरा हुआ दिख रहा है।

चित्र में शॉप का नाम अरिहंत ऑटो पार्ट्स लिखा दिख रहा है।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

चित्र में मुझे एक शॉप दिखाई दे रही है।

चित्र में इसका कलर रेड और बीच में कलर ब्लैक दिख रहा हैं।

चित्र में मुझे एक व्यक्ति गेट में खड़ा दिख रहा है।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा हैं।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

चित्र में मुझे सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।

चित्र में मुझे एक टेबल दिखाई दे रही है।